मुझे यहाँ पर दरवाजे भी दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पे पुता हुआ भी दिखाई दे रहे है मुझे यहा टेबल पे मूर्ति भी रखी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर मुझे यहाँ पर मुझे बोहोत सारा सामान भी दिखाई--

इ यहाँ पर अस्पताल दिखाई दे रही है इसमें में एक आदमी की हड्डी रखी हुई दिखाई दे रही है इसमें माँ-मम मास्क भी लगा हुआ है।